यह एक बहुत बड़ी छत है जिसमें काम चल रहा है और यहाँ लोहे की सरिये बिछी हुई हैं।

यह सुबह का समय है। सूर्य उदय हो रहा है और उसकी किरणें घासों पे पड़ रही हैं।

इसमें काफी सारे शीशें हैं और बड़ी-बड़ी खिड़किये हैं और यह बहुत सुंदर है।

जो कि रंगी आसन पे बैठी हुई है जिसमें बाकी की औरत बैगनी कलर दूसरी औरत गुलाबी कलर तीसरी औरत येलो कलर --